एक रेस्ट्रोरेंट दिखाई दे रहा है उसमें दो लड़के बैठे हुए हैं एक बॉटल रखी हुई है दो कॉफी भी रखी हुई है एक मैगी भी है।

बॉल दिखाई दे रही है एक कागज दिखाई दे रहा है कुछ पॉलीथिन ब्लू कलर की दिखाई दे रही है घास दिखाई दे रही है।

स्विमिंग पुल दिखाई दे रहा है स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं हिरन बनी हुई दिखाई दे रही है।

पंजाब नेशनल बैंक का बैनर दिखाई दे रहा है मैनेजर का केबिन दिखाई दे रहा है अ ए_सी दिखाई दे रहा है पाइप्स दिखाई दे रहे है ।

हां बैग दिखाई दे रहा है कुछ कचरा भी दिखाई दे रहा हैए_सी का आउटडोर दिखाई दे रहा है ऊपर बालकनी दिखाई दे रही है।

स्टील की स्टिक्स दिख रही है जमीन में ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है।

एक होटल है गोकुल वहाँ पे एक अ एक्वेरियम है फिशेस दिखाई दे रही --

पेड़ दिखाई दे रहा है एक स्टीक खम्भा दिखाई दे रहा है।

कुछ दरवाजे दिखाई दे रहे है म टाइलस दिखाई दे रहे है।

चेयर्स दिखाई दे रहे हैं टेबल पे दस्तरखान बिछा हुआ है कुछ फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं कुछ टिश्यू रखे हुए हैं कुछ नमक के न अ डब्बे रखे हुए हैं|

एक बिल्डिंग है वहां पे कुछ सीरीज का डेकोरेशन है कुछ विंडोज है ऊपर टाइल्स लगी हुई है कुछ मालाये भी दिखाई दे रही है कुछ ऐ चैनल्स है।

कुछ लाइट्स लगी हुई हैं कुछ फ्लावर पॉट रखे हुए हैं अ टिश्यू रखे हुए हैं एक आदमी खड़ा हुआ है|